अंदर की ओर एक बहोत बड़ा सा भी लगा हुआ नजर आ रहा है और एक आदमी भी खड़ा है।

ये किसी बिल्डिंग की फोटो दिखाई दे रही है जिसके बाहर की ओर बहुत सारी गाड़ियां भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पे एक सर्कल जैसा बना हुआ है जिसके बीच में बहुत सारी घासें भी लगी हुईं दिखाई दे रही हैं।

ये एक बाजार की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर एक मोहन ढाबा बना हुआ नजर आ रहा है।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

ये किसी स्टेज की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर स्टेज को फूलों के द्वारा सजाया हुआ नजर आ रहा है।

पीछे की ओर एक लोहे की रैक लगी हुई है जिसमें कुछ हेलमेट रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

उसके पास में एक प्लास्टिक की कुर्सी भी रखी हुई दिखाई दे रही है और बाहर बड़े बड़े अशोक के दो तीन पेड़ भी लगे हुए नजर आ रहे --

ये किसी बाजार की फोटो दिखाई दे रही है जोकि एक बहोत ही बड़ा सा बना हुआ है।

यहां बाहर की ओर एक पान का केबिन भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है जहां पर बहोत सारे गुटके वगैरह टंगे हुए नजर आ रहे हैं।

ये किसी कैफे के बाहर की फोटो दिखाई दे रही है जिसका नाम ओवेन कैफे है यहां पर --

यहां पर बहोत सारी टेबल है कुर्सियां रखी हुई दिखाई दे रही है जहां पर टेबल पे बहोत सारे लोग भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये किसी मकान की फोटो दिखाई दे रही है जहां पे बहोत ही बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई नजर आ रही है।

और सामने की और कुछ बिल्डिंगे भी बनी हुई दिखाई दे रही है इस फोटो में एक बड़ी सी रोड भी आती हुई नजर आ रही है।